पेड़ पौधे लगे नजर आ रहे हैं हरी भरी पेड़ है गेट पर कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।

और पौस्टर पे लटके हुए नजर आ रहे हैं और कुछ जो है चिप्स - उप्स भी नजर आ रहे हैं कुरकुरे नजर आ रहे हैं।

एक तस्वीर में हमको देखने को मिलता है ये दूर से फोटो लिया गया है।

एक पुरुष खड़े हैं एक मां खड़ी पु महिला खड़ी है बच्चे पानी वाटर पार्क में पूरा मस्ती क--

और कुछ है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है।

इस तस्वीर में हमको दिखाई दे रहा है कि आगे में ईंटा बालू नजर आ रहा है।

कुछ भूरे टाइप के दिखाई दे रहा है उजला ब्लू --